और बैठने के लिए कुर्सियां भी दिखाई दे रहा है और उसके पीछे लोहे से बना हुआ दीवार भी दिखाई दे रहा है।

और और पीला रंग का दीवार भी दिख रहा है।

र सामने पर एक सफेद रंग का टी शर्ट पहना हुआ बुड्ढा भी दिखाई दे रहा है।

पर बहोत सारे इंसान बैठे हुए दिखाई दे रहा है।

और लकड़ी का बना हुआ पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

अंदर एक छोटा सा मशीन भी है और बहुत सारे डिब्बे भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर बहुत सारे मकाने दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे रंग की कार भी दिख रहा है और खुला आसमान भी दिख रहा है।

कमरा का रंग सफेद और पीला रंग का भी दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस तस्वीर पर बहुत सारे इंसान और बच्चे दिखाई दे रहा है।